खड़ी दिखाई दे रही है छोटी बड़ी नाव है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

की छत बनी हुई है और यहाँ पर जैसे रेस्ट हाउस बेठने के लिये बनाया गया हो और इस पर कुछ लिखा हुआ है व्हाइट कलर के बोर्ड पे --